यहां पर कपड़ों का शोरूम दिखाई--

यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और बहुत सारी मोटरसाइकिल भी खड़ी --

तेल टंकी भी दिखाई दे रही है।

पर कुछ मकान दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग गाड़ियों मे पेट्रोल डाला रहे है।

कुछ मजदूर खड़े हुए हैं जो मकान बना रहे हैं।

दो आदमी भी खड़े हुए है एक बल --

यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।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

एक वॉश प्रेशर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक शोप दिखाई दे रही है।

पहाड़ के बीच में मंदिर भी है।

कैफे के अंदर कुछ टेबल कुर्सियां भी रखी हुई है।